यहां पर एक रेड कलर की चेयर है एक आदमी इन्हें कुछ समझता हुआ दिखाई दे रहा है एक लड़की खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

दूसरा उसके पीछे खड़ा है और एक और उसके पीछे खड़ा--

जिनके ऊपर हमारा सी एंड बी टेक लिखा हुआ है।

इसपर मित्तल सिक्योरिटी सर्विसेज एंड कांट्रैक्टर मुल्तान नगर भोला रोड मेरठ लिखा गया है।

यहां पर एक फंक्शन हो रहा है।

यहां पर कार दिख रही है एक।

गिटार दिख रहा है तबला दिख रहा है ढोलक दिख रही है।

ओ एक आदमी दिख रहा है कुछ फैंस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फिश मार्केट है जहां पर बहोत सारी छोटी मछलियां पड़ी हुई हैं।

यहां पर माला दिख रही है हमे वो भी गेंदे के फूल की यहां एक हंस है वाइट कलर का।

और साइड में कुछ लकड़ियां दिख रही हैं।